यह एक पेटीयम मशीन और इस पेटीयम मशीन में के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू द बैंक ऑफ़ इंडिया । बैंक ऑफ़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है।

इस जगह बहोत बड़ी बिल्डिंग है और इस बड़ी बिल्डिंग के किनारे बहोत बड़ी-बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। इसके नीचे फ्लोर में पूरी तरह हरी-हरी घांस है।

यह एक बहुत ही सजावटी पंडाल है। इस पंडाल का पूरी पर्दा हरे रंग से सजाया गया है। जो हल्का हरे रंग है और उसके फ्लोर को डीप ग्रीन से सजाया गया है।